चित्र में मुझे एक गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है और--

कटनी जंक्शन का स्टेशन दिख रहा है।

और चित्र में मुझे कार दिख रही है।

चित्र में मुझे गर्ल्स की शॉप दिखाई दे रही है।

दूल्हा दिखाई दे रहा है और कई सारे लोग खड़े हैं।

चित्र मे मुझे कपड़े की शॉप दिख रही है।

चित्र में मुझे बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

चित्र में मुझे टेबुल और कुर्सी लगी दिख रही हैं।

चित्र में मुझे पेड़ दिख रहा है।